अलग-अलग माउंटेन से निकल सकती है जो कि इंडिया में पानी की भरपूर मात्रा को पूरा करती है इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में --

तो कोशिश करें कि वहाँ पर आप आग की आग का जो है प्रकार का यूज़ न करें तो बेहतर रहेगा।

बाइक जो है वो बहुत ही अच्छा और हैवी एक्सपीरियंस देती है।

किसी का बर्थडे हो कहीं पार्टी हो यह फिर कुछ वेडिंग फंक्शन सबसे कॉमन चीज़ होती है वो होता है केक ।

गर्मियों में जो है वाटर पार्क जाना सबसे अच्छा है।

अब छोटी-छोटी होने के कारण ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सामान कम होते हैं उसके अंदर बड़े टूस-टूस के बड़े सामान भरे हुए होते हैं|

इंडिया में ज्योग्राफिकल डायवर्सिटी भी देखने को मिलती है।

क्यूंकि सबको गोवेरमेंट जॉब नहीं मिलती है तो लोग प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं काम करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद अपने आजीविका उसको चलाते हैं अपने परिवार को पालते हैं।

इंडिया में टवेल्थ पास करने के बाद आप एक कॉलेज जॉइन करते हैं।

हम सब जानते हैं कि सेहत के लिए सबसे बढ़िया होती है साइकिलिंग --

जहाँ पर हम बहोत सारे गेम्स देख सकते हैं जैसे स्लाइड हो गया या फिर झुले हो गया ये सब स्लाइड झूले वगेरा खेलते हैं और यहाँ जो हैं ।